यह फोटो एक होटल के बारे में दिखाई गई है जिसके दीवार पर एक पेंटिंग भी लगी हुई है।

सामने खड़ी हुई है और एक मेज़ भी इसके अंतर्गत लगी हुई है।

जो सारे के सारे लगभग प्रिंटर के दिखाई दे रहे है और उसके पास में एक फैन भी लगा हुआ है और इस दुकान या शोरूम के अंदर --

और उसकी टेबल पर पेन कैलकुलेटर कॉपी हो रखा हुआ है और उसके पास में एक चेयर भी है।

यह तस्वीर एक नाई की दुकान की नजर आ रही है जिसका नाम है विजय हेयर ड्रेसर ।

इस तालाब के साइड में दीवारों में बेड़िया भी बनी हुई है जिसमें अलग अलग प्रकार की चित्रकारी भी की गई है।

इमारत के नीचे दो पिलर लगे हुए हैं जीस पर एक गोलनुमा ईमारत भी बनी हुई है और ऊपर दो एन_ए पिलर भी लगे हुए हैं।

टू व्हीलर्स के पार्ट्स और ये सब लिखा हुआ है।

और पीछे एक विकेट कीपर खड़ा हुआ है और एक बॉलर भी नजर आ रहा है और कई--